देखने से ये यही लग रहा है कि ये एक स्कूल का प्रोग्राम होने वाला है।

इस तस्वीर में एक दुकान जैसा दृश्य है जिस में बहुत सारी घरेलू उपयोग की वस्तुएं और छोटे उपकरण रखे हुए हैं।

इस तसवीर में एक इनडोर जगह दिखाई दे रही है जो किसी कार्यालय स्कूल या संस्थान का हिसा हो सकता है।